नीचे ग्रीन कलर का बोर्ड है उपर उप स्टील का बोर्ड है उपर एक स्टील का गोल शेप में बाउल --

कुछ चेयरी फ्लैग्स पकडे हुए है पीछे बहुत सारी कलरफूल लगे हुए है आगे नीचे नीचे ग्रीन कलर के मैट्स लगे हुए है आगे ऑडियंस बै--

जैसे कि इस पिक्चर मे चेक कर पा रहे है एक ऑटो मे कुछ सवारी है सवार है ऑटो साइड आगे एक आदमी है उसके बाजू बाहर को निकली हुई है व्हाइट कलर कि शर्ट डाली हुई है उसके साइड में है उसके पीछे एक गेट बना हुआ है।

जैसा कि हम ये चेक कार पा रहै है यह पर एक गाड़ी है जिसका फ्रन्ट ओपन है बहुत सारे आदमी खड़े हुए है बहुत सारे मकेनिक है पड़े हुए है|

जैसे की हम चेक कर पा रहे है सामने दो ऑटो खड़े है जिनपे फूलो की माला लगी हुई है एक ऑटो ब्लू कलर का है येल्लो ग्रीन कलर का है।

पीछे गोब्बरे लगे हुए है जो कि पिंक और व्हाइट कलर के है उनके पास एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने और ब्लैक पैंट ली हुई है |

और एक आदमी उसके पास खड़ा है जो उसकी टांग को खींच रहा है और एक्सर्साइज़ करवा रहा है उसने हाथ पर ग्लव्स डाले है जो नीचे वाला है उसने ट्रैक सूट डाला हुआ है।

कुछ बैठने की जगह है जो ऊपर से रेड कलर पैंट की और नीचे सिमेन्ट की है पीछे दीवार बी रेड कलर पैंट --

एक लेडी ने सलवार सूट डाला हुआ है दूसरी ने रेड और ब्लेक सलवार सूट डाला है हाथ में बच्चों ने स्टिक्स पकड़ी हुई है पास में एक आदमी खड़ा है जिसने क्रीम सर्ट और ब्लै--

उसने व्हाइट कलर के शॉर्ट्स और व्हाइट कलर के टी-शर्ट्स डाली है पीछे कुछ शॉपस है और पीछे एक गेट है जो ब्लू और ग्रीन कलर मे है उसने पेरों मे ब्लैक कलर की संडल्स चप्पल्स डाली है।

जैसे की में चेक कर पारही हूँ पोस्ट ऑफिस है उसके बाहर बहुत सारे बाइक लागी हुई है एक बड़ा आदमी जो बाइक पे बैटा हुआ जिसमे और ब्लैक कलर का कपड़े डाले हुए है हुयै है उसके गेट बी ।